ये एक- यहां पे दो बच्चे है जो फिसलने वाले फिसल रहे है उसके साइड से सीढ़ी है और फिसलने वाला चार खम्बो पे लगा हुआ है।

पंछी के आगे पीछे कुछ झाड़ी झाड़ी लग--

यहाँ पे प्लस टेम्पल है| प्लस के बीचों-बीच एक आदमी लटका हुआ है उसके हाथ प्लस में बंधे हुए है।